सामने एक बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर ब्रांड --

रखा हुआ है एक बोर्ड लगा है एक सफेद तीर का निशान भी है।

यह एक्सरसाइज कर रहा है इसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ हैं इसने सफेद हाफ बनियान पहना हुआ है।

रंग बिरंगे के कपड़ों में किसी ने लाल रंग के कपड़े किसी ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं एक पिंक कलर का भी कुछ दिखाई दे रहा है।

खड़ी हुई है और कुछ हरे-हरे पेड़ भी हैं ऊपर की तरफ शेड भी लगी हुई है एक व्यक्ति खड़ा है इसने हाँ हाँ--

सामने की तरफ बहुत ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ग्राउंड है पीछे की तरफ हरे-हरे पेड़ दिख रहे हैं।

बहुत सारे घर भी हैं यहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ है और कुछ--

ये सामने की तरफ एक स्टेज बना हुआ है स्टेज को रंग बिरंगे फूलों से--

सामने दीवार पर एक गोल घड़ी लगी हुई है बहुत सारी टेबलें लगी हुई हैं ऊपर से नीले रंग की हैं और बहुत सारी यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं सामने की तरफ़ तो--

यहाँ सामने की तरफ हरे-हरे पेड़ दिख रहे हैं और कुछ घर बना हुआ है रोड पर कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं सफेद रंग की एक बाइक स्कूटी भी--

यहाँ सामने की तरफ एक हवाई जहाज खड़ा है यह सफेद रंग का है नीचे की तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं इन्होंने रंगबिलंग के कपड़े--

पहने हुए हैं चारों तरफ हरी-हरी घास है कुछ हरे पेड़-पौधे भी हैं एक व्यक्ति चलता हुआ नजर आ रहा है इसके कंधे पर एक बैग है।

पेड़ हैं इनकी पत्तियां हरे रंग की हैं तीन गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं पीले रंग की--

सामने की दीवार पर एक स्क्रीन लगी हुई है नीचे की तरफ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं टेप कुर्सियों के ऊपर एक व्यक्ति--

खड़ा हुआ है एक लड़की है इसके लंबे बाल हैं इस व्यक्ति ने लाल रंग की फुल टीशर्ट पहनी है छत में पंखा लगा हुआ है।

हुई है एक अलमारी भी है बगल में नीचे की तरफ सोफे भी रखे हुए हैं उनके ऊपर गद्दी भी है।

व्यक्ति खड़ा हुआ है इसके पीले रंग का कच्छा है पैरों में कुछ पहन रखा है इसने दो लंबी कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं।

सामने की तरफ़ बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं शेल्फ लगी हुई हैं इनके अंदर कपड़े रखे हैं कुछ कपड़े पन्नी में हैं कुछ बिना पन्नी के रंग-बिरंगे कपड़े हैं लाल--

पीले नीले सामने काउंटर लगा हुआ है काउंटर के ऊपर भी कपड़े रखे हुए हैं।

टेबल और कुर्सियाँ लगी हुई हैं इन कुर्सियों के ऊपर गद्दी लगी हुई है हरे रंग के सामने की तरफ एक काउंटर लगा हुआ है उसके ऊपर हरे रंग का कुछ--

यह किराने की दुकान है यहाँ पर सामने लोहे की सेल्फ लगी हुई है इनके अंदर अलग-अलग सामान रखा है कुछ अलग-अलग पैकेट्स हैं कुछ बोतल्स हैं सामने की तरफ भी कुछ पैकेट --

यह एक बहुत बड़ा समुद्र है यहाँ पर पानी भरा हुआ है पीछे की तरफ हरे-हरे पेड़ नजर आ रहे हैं लोहे का एक पुल भी बना हुआ है डिज़ाइन वाला लोहे के बीच में गोल-गोल से भी कुछ बने हुए हैं।

कुछ लिखा हुआ है कुछ लाइटें भी जली हैं बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़ों में--

यह एक मार्केट का वीडियो है दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं।

कुछ व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं रंग-बिरंगे कपड़ों में सड़क के ऊपर कुछ सामान भी पड़ा हुआ है एक टोकरा रखा है लकड़ी का उसके अंदर हरा-हरा कुछ दिखाई दे रहा है फल फ्रूट्स भी लटके हुए हैं।

पैरों में जूते पहन रखे हैं और जिम का कुछ रखा हुआ है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

सामने की तरफ़ एक बिल्डिंग है य इसमें बाहर की तरफ़ लोहे का एक पीले रंग का गेट लगा हुआ है साइड में एक हरे रंग का पेड़ भी नजर आ रहा है दूसरी साइड में भी एक हरे रंग का--

ये अंधेरे का समय है यहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे बेंच पर बैठे हुए हैं एक पुतला सा लगा हुआ है सामने की तरफ रोशनी रोशनी आ रही है कुछ हरे-हरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं ये गड्ढा सा भी--

नजर आ रहा है कुछ कुर्सियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं बैठने के लिए--

सामने एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर इसने टोपी ओड़ रखी है इसके लंबी दाढ़ी है काले रंग की हाफ टीशर्ट पहनी है लाल रंग की काउंटर बना हुआ है काउंटर के ऊपर बहुत सारे रंग बिरंगे सूट लगे हुए हैं सामने--

यहाँ सामने की तरफ पूरे गोलाकार में सोफा लगा हुआ है ग्रे कलर का उसके ऊपर कुशन रखे हुए हैं डिज़ाइन वाले पीछे की तरफ भी कुछ सामान रखा है आगे एक--

कांच की टेबल है कांच की टेबल के ऊपर दो खाली बॉक्स रखे हैं और एक डायरी रखी हुई है एक फ्लावर पॉट भी नजर आ रहा है।

यहाँ सामने की तरफ ऊपर कुछ लिखा हुआ है नीले रंग के पर्दे लगे हुए हैं जिम की कुछ मशीनें--

लगी हुई है शीशे लगे हुए हैं खिड़कियों पर छत में एक पंखा और लाइटें भी लगी हुई है खिड़की में से बाहर के नजारा दिखाई दे रहा है।

काउंटर लगा हुआ है इसके ऊपर भी चप्पल जूते रखे हुए हैं और भी टेबल फैन लगे हुए हैं दीवारों के ऊपर--

बैंक लिखा हुआ है ऊपर की तरफ एक बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ है।

सामने की तरफ एक स्टेज बना है स्टेज के ऊपर बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं पीछे की तरफ एक बैनर लगा हुआ है बैनर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है साइड में--

ये कपड़ों की दुकान है यहाँ पर चारों तरफ रंग-बिरंगे छोटे-बड़े कपड़े लटके हुए हैं हैंगर में कुछ नीले रंग के हैं कुछ सफेद रंग के हैं कुछ जैकेट्स भी हैं।